एक बड़ी बिल्डिंग भी है बहुत अच्छी लगी बहुत सारी दुकाने है यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी है यहाँ पर आ जा रही है बाहर जा रही है बहुत सारी गाड़ी भी रखी है एक काले कलर की एक सफेद कलर की बहुत अच्छी लग रही है।

यहाँ पर एक से एक बहुत सारी औरते यहाँ पर छटी माई की पूजा हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सफेद कलर का बादल भी है बहुत अच्छा बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है उसमे औरते बै--

नजारा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बहुत मछली रखी है कुछ छोटी है कुछ बड़ी है बहुत सारे औरते भी यहाँ पे -- लड़की भी यहाँ पर खड़ी है बहुत अच्छा लग रहा है कुछ बेंच भी रही है यहाँ पर बहुत सारी मछली रखी है यहाँ पर--

तीन यहाँ पे दिखाई दे रही है जो की बहुत अच्छी लग रही बहुत सारी झंडे भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सा चाभी भी दिखाई दे रहा हैं जो की बहुत अच्छा लग रहा हैं यहाँ एक लड़का भी खड़ा--